लड़कियों लड़को को देख रहा है जहाँ पास लड़कों ने कुछ बना रहे है देख कर लग रहा है यहाँ कुछ कम्पटीशन का प्रोग्राम हो रहा है यही पस एक बच्चा आपना सिर को झुकाया हुआ है और एक बच्चा आपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है एक सफ़ेद कलर का बच्चा वहाँ पास आया हुआ है जोकि उनलोगों की बनावट को दे --

उसके किनारे में कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है जोकि बड़े-बड़े है उसके ऊपर में पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे --

एक पपीता का दिख रहा है जिसमें पपीते कच्चे दिखाई दे रहे है उसके जस्ट किनारे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि मुनगा का लग है नीचे में बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे है जोकि बहुत ही सुन्दर और काफी हरी -भरी दिखाई दे रही हैं ।